लिबरऑफिस बेस पर स्पोकेन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
कॉम्प्लेक्स जटिल फॉर्म्स के इस ट्यूटोरियल में हम इनके बारे में सीखेंगे
एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म को बनाना और फॉर्म में बदलाव करना पिछले ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कि फॉर्म्स का उपयोग करके कैसे डेटा प्रविष्ट करें और लिबरऑफिस बेस का उपयोग करके कैसे फॉर्म में बदलाव करें
इस ट्यूटोरियल में एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म को बनाना सीखते हैं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
और अपना लाइब्रेरी डेटाबेस खोलते हैं
यदि बेस पहले से ही खुला है तो हम लाइब्रेरी डेटाबेस यहाँ फाइल मेन्यु में ओपन पर क्लिक करके खोल सकते हैं
या फाइल मेन्यु में रिसेंट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके
एक नया फॉर्म बनाते हैं जो हमें लाइब्रेरी के सदस्यों को दी गयी पुस्तकों की खोज करने में मदद करेगा
चलिए देखते हैं कि कैसे हम इस फॉर्म को बना सकते हैं जो स्क्रीन इमेज पर दर्शाया गया है
लिबरऑफिस बेस मुख्य विंडो पर जाते हैं और बाएं पैनेल में डेटाबेस सूची में फॉर्म्स आइकन पर क्लिक करें
और फिर उसे विजार्ड टो क्रिएट फॉर्म पर क्लिक करिये
यह फॉर्म्स विंडो खोलता है और अब सबसे ऊपर परिचित विजार्ड हम इस विजार्ड को विस्तार में पहले ही देख चुके हैं अतः हम अभी इसके साथ जल्दी से आगे बढ़ते हैं
स्टेप 1 में फील्ड सिलेक्शन चलिए टेबल्स ओर क्वेरीज लेबल के नीचे ड्रॉप डाउन बॉक्स में से TablesBooksIssued चुनते हैं
डबल एरो बटन का उपयोग करके सभी फील्ड्स को बायीं से दायीं तरफ स्थानांतरित करते हैं
नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं
यह स्टेप 2 है किन्तु अभी के लिए हम इस स्टेप को छोड़ देंगे और नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं
हम अब स्टेप 5 में हैं पहला अरेंजमेंट कोलमनार - लेबल्स लेफ्ट चुनते हैं और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं
चलिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके स्टेप 6 भी छोड़ते हैं
स्टेप 7 ईसीई ब्लू चुनते हैं और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं
स्टेप 8 में फॉर्म को बुक्स इश्यूड टो मेंबर्स नाम देते हैं
और मॉडिफाई थे फॉर्म विकल्प पर क्लिक करिये
अगला फिनिश बटन पर क्लिक करिये
ध्यान दीजिये कि विजार्ड पॉपअप विंडो जा चुकी है और हम फॉर्म डिज़ाइन विंडो को देख रहे हैं
यहाँ फॉर्म को डेटा प्रविष्ट करने के इस्तेमाल से पहले हम कुछ बदलाव करने जा रहे हैं
सबसे पहले सारे एलीमेंट्स को जिसे हम फॉर्म पर देख रहे हैं उनको असमूहीकृत करते हैं
हम यह कर रहे हैं जिससे कि हम फॉर्म पर विशिष्ट एलीमेंट्स की विशेषताएँ आसानी से सम्पादित कर सकें
फॉर्म के सारे एलीमेंट्स को एक बार में असमूहीकृत करने के लिए हमें सबसे पहले सारे फॉर्म एलीमेंट्स को चुनना होगा
यह करने के लिए सबसे पहले फॉर्म डिजाइन टूलबार खोलते हैं
सबसे उपर व्यू मेन्यु पर क्लिक करके फिर टूलबार्स पर क्लिक करिये और फिर फॉर्म डिजाइन क्लिक करिये
इस टूलबार में एक बार माउस पॉइंटर आइकन पर क्लिक करते हैं जोकि पहला और सबसे बायीं तरफ का आइकन है
हम इसे अब से सिलेक्ट आइकन बोलेंगे
यह क्लिक और ड्रैग करके फॉर्म एलीमेंट्स का चुनाव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं
अब फॉर्म पर उपरी बायीं तरफ क्लिक करते हैं और तिरछा निचले दायीं तरफ ड्रैग करते हैं
अब आप काले और सफेद लाइन्स के एकान्तर का एक आयत यानि रेक्टैंगगल देखेंगे
चलिए सुनिश्चित कर लेते हैं सारे फॉर्म एलीमेंट्स इस आयत के भीतर हैं
फॉर्म एलीमेंट्स के समूह को चुनने के लिए हम इसका इस्तेमाल बार बार करेंगे
अब हम देख सकते हैं कि यह सारे एलीमेंट्स एक छोटे हरे बॉक्स के अंदर बंद है
अब जो भी क्रिया हम यहाँ करेंगे इस क्षेत्र के भीतर सभी एलीमेंट्स पर समान रूप से प्रभाव डालेगा
अब माउस पॉइंटर को यहाँ किसी भी लेबल के उपर ले जाते हैं
ध्यान दीजिये कि माउस पॉइंटर लेबल्स या टेक्स्ट बॉक्सेस के उपर प्लस चिह्न की तरह दिख रहा है
अतः चलिए लेबल के उपर दायाँ क्लिक करते हैं और सबसे नीचे ग्रुप पर क्लिक करते हैं और अनग्रुप पर क्लिक करते हैं
अब एक शीर्षक लिखते हैं जोकि सारे फॉर्म एलीमेंट्स के ऊपर होगा
इसके लिए चलिए फॉर्म एलीम्नेट्स को नीचे लाते हैं और फिर फॉर्म के अंदर मध्य में
अतः पहले डाउन एरो बटन लगभग सात बार दबाएँ
फिर राईट एरो की लगभग 14 बार
ध्यान दीजिये कि यह सारे चुनित फॉर्म एलीमेंट्स को फॉर्म के दायीं और मध्य में खिसका देगा
अब कर्सर को वहां लाते हैं जहाँ हम शीर्षक लिखना चाहते हैं
यह करने के लिए फॉर्म विंडो क्षेत्र के उपरी बायीं तरफ क्लिक करते हैं
और enter बटन दो बार दबाइए
फिर tab बटन 4 बार दबाइए और फिर टाइप करिये फॉर्म टो ट्रैक बुक्स इश्यूड टो मेंबर्स
अब जैसे ही हम विशिष्ट लेबल्स और टेक्स्ट बॉक्सेस पर क्लिक करते हैं हम देखते हैं कि यह एलीमेंट्स विशिष्ट रूप से चुनित या चिह्नांकित हो गये हैं
ठीक है अगला फॉर्म पर बुकिड और मेम्बेरिड लेबल्स को फिर से नाम देते है
हम यह बुकिड लेबल पर डबल क्लिक करके कर सकते हैं जोकि एक नई परिचित प्रॉपर्टीज विंडो खोलता है
लाबेल के सामने बुक टाइटल टाइप करिये
अब चलिए फॉर्म पर मेम्बेरिड लेबल पर क्लिक करते हैं
ध्यान दीजिए कि प्रॉपर्टीज विंडो रिफ्रेश हो गयी है और फिर से यहाँ हम लाबेल के सामने मेंबर नामे टाइप करेंगे
जैसे ही हम tab बटन दबाते हैं हम देखेंगे कि फॉर्म पर नया लेबल बदल गया है
अगला इन एलीमेंट्स का अब फ़ॉन्ट साइज़ बदलते हैं
फिर से सारे एलीमेंट्स को चुनते हैं
हम क्लिक ड्रैग और ड्रॉप तरीका इस्तेमाल करेंगे
और अब हम किसी भी लेबल पर डबल क्लिक करेंगे जोकि प्रॉपर्टीज विंडो खोलेगा
फोंट को खोजने के लिए नीचे स्क्रोल करते हैं और उसके दायीं तरफ वर्गस्क्वेयर बटन पर क्लिक करते हैं
नये पॉपअप विंडो में बोल्ड पर क्लिक करते हैं और साइज 8 पर क्लिक करते हैं
और ओक बटन पर क्लिक करते हैं
ध्यान दीजिये कि फॉर्म में फ़ॉन्ट अब बोल्ड और साइज़ 8 में बदल गया है
अगला सारे फॉर्म एलीमेंट्स को विंडो के मध्य में स्थानांतरित करते हैं
इसके लिए हम सारे एलीमेंट्स को चुनेंगे
अब किसी भी लेबल पर क्लिक करते हैं और फॉर्म डिजाईन विंडो के मध्य की तरफ ड्रैग करते हैं
अब फॉर्म को सेव करते हैं
और इस विंडो को बंद करिये
यह देखने के लिए कि अब हमारा फॉर्म कैसा दिखता है
बेस के मुख्य विंडो पर जाते है और दायें पैनेल पर बुक्स इश्यूड टो मेंबर्स फॉर्म पर डबल क्लिक करिये
यह फॉर्म खोलेगा जोकि डेटा प्रविष्ट करने के इस्तेमाल के लिए तैयार है
अब इस फॉर्म में हम कुछ मिसाल के तौर पर डेटा देख सकते हैं
और बुक टाइटल और मेंबर नामे के सामने हम कुछ संख्याएँ देखते हैं
जोकि सचमुच में बुक्स और मेंबर्स सूची में प्राथमिक संख्याएँ हैं किन्तु ज़्यादा अनुकूल संख्याएँ नहीं हैं
क्या आप असली नामे और बुक टाइटल्स देखना चाहते हैं
और हम यह कैसे करेंगे
एक तरीका है कि फॉर्म कंट्रोल नामक लिस्ट बॉक्स को जोड़ें
हम अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे कि कैसे लिस्ट बॉक्स और कंट्रोल्स के दूसरे रूप को जोड़ें और इस्तेमाल करें
अब हम लिबरऑफिस बेस में काम्प्लेक्स फॉर्म्स पर ट्यूटोरियल में समाप्ति की ओर हैं
संक्षेप में हमने सीखा एल काम्प्लेक्स फॉर्म को बनाना और फॉर्म में बदलाव करना स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा हैयह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है
यह प्रोजेक्ट httpspoken tutorialorg द्वारा संचालित है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद